दुकान बनी हुई है रात का समय व्हाइट कलर की सफेद कलर की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

ये एक कॉलेज एरिया ट्रे इंजीनियरिंग परिक्षा केंद्र है। यहाँ--

सामने की ओर व्हाइट कलर का टूटा हुआ दीवाल दिखाई दे रही है दोपहर का समय है धूप अन्दर साइड आ रही है।

फिरंगी विरंगी झालरें लगायी गयी हैं और आजू बाजू कई इंसान खड़े हुए है।

रेड कलर की ग्रीन कलर की लाइटिंग लगाई गई है रात का समय है साइड में पेड़ पौधे --

ढेर सारी लाइटिंग लगाई हुई है बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक दो तीन गेट बनाए गए हैं लोहे के पाईप गड़ाये गए हुए हैं।

ऐसा लगे बॉर्डर किए गए हैं। व्हाईट वाइट कलर की बाउंड्री बनाई गई है जिसे बाउंड्री दिखाई गई ऐसा लगी --

नीचे की ओर बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं जो हरे-भरे पेड़-पौधे हैं।

इस फोटो में हमें कई इंसान बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जो--

ऊपर बल्फे-बल्फे लगाए गए है वाइट कलर की बल्फे लगाए गए है।